यह एक रेसटूरेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं --

जो कि एक बूढा चला रहा है एक आदमी बैठा हुआ है।

जो कि पटेल नगर राजा बाजार जहानाबाद में है। .